इस तस्वीर में हमे एक नदी का तट दिखाई दे रहा है जहां पे ये तस्वीर ली गई है।

नदी वाकई काफी चौड़ी है और उसका पानी काफी साफ़ है।

इंजीनियर्स चढ़ के निरीक्षण करते है और उसके ऊपर से हमें --

एक सर दिखाई दे रहे है जिन्होंने रेड लाल रंग की टी-शर्ट और सफ़ेद कलर का पैंट पहना हुआ है।

सामने एक व्यक्ति हमें एक प्लेट ले जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रही है सामने की तरफ जहाँ पे हम काफी सारा--

यह तस्वीर एक मस्जिद के बाहर की है जहाँ पे हम --

इस तस्वीर में हमे एक छत ढलती हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपरी--

मंच को काफी अच्छेसुन्दर तरीके से सजाया गया है।

यहाँ पे हम मेले मे काफी भीड़ को भी देख सकते है मेला खचा-खच लोगो से भरा हुआ है।

पीछे हमें एक आर_रो दिखाई दे रहा है जिसके आगे सिंक लगा हुआ है।

यह कहने को कुंड जैसा लग रहा है।

यहाँ पे आस-पास काफी सारी स्टॉले लगी हुई है।

बहुत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए है और उनके पास कुछ ना कुछ आर्ट एन आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ-कुछ सामान है।

गरबा करते हुए दिखाई दे रहै हैं।

उसके ठीक सामने हमे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने नीले रंग की टी-शर्ट और सिल्वर कलर का --

ऊपर एक बड़ा सा खम्बा है जिसमे ढेर सारी लाइटस लगी हुई है नाईट मैचेस के लिए--